ये बेस्ट डेस्क भी दिखाई पड़ रहे हैं एक और बड़ा सा टेबल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर किताबें रखी गई हैं।

कांच का दरवाजा है बाहर पार्किंग में काफी गाड़ियां लगी हुई है।

चित्र में एक बेकरी शॉप दिखाई पड़ रहा है सामने लकड़ी के बने हुए रेक्स पे काफी ब्रेड बिस्किट रखे हुए हैं।

एक और काउंटर है काउंटर के ऊपर बिलिंग मशीन उस लैपटॉप और ओवन रखा हुआ है।

दो व्यक्ति जमीन पे लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति खड़ा है उसके पीछे एक कांच का शीशा लगा हुआ है।

दरवाजे पे पानी का जार एक टेबल पे रखा हुआ है वह दिखाई पड़ रहा है।

इस चित्र में एक चिड़ियाघर का दृश्य है यहां सामने में काफी हिरण दिखाई पड़ रहे हैं।

से रास्ता जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है वहां पर कुछ गाड़ियां भी दिखाई पड़ रही है कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं।

मैदान के बीचों बीच कुछ पोल भी लगे हुए हैं और सामने मकान भी दिख रहा है जो पीले रंग का है।

चित्र में एक रेस्टोरेंट का दृश्य है यहां काफी टेबल कुर्सियां दिखाई पड़ रही हैं जो वुडन की हैं।

सामने काउंटर के पास साइड में कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

टेबल के ऊपर एक कैंडल जल रहा है सभी लोग आसन योग की मुद्रा में है।

बाहर बोर्ड पर थैंक यू लिखा हुआ है बाईं ओर भी दो काउंटर है।

भी बने हुए हैं वहां भी काफी वस्तुएं रखी गई हैं खाने पीने की लाइटें बहुत खूबसूरत जल रही हैं।

टेबल दिखाई पड़ रहा है एक खाली कुर्सी प्लास्टिक की दिखाई पड़ रही है।

बीच में एक पीले रंग का टी शर्ट पहन के व्यक्ति घूमता हुआ दिखाई दे रहा है।

गोल पोस्ट भी दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ काफी भीड़ है।

लिखा हुआ है और ऊपर बस के छज्जे पर कुछ लोग बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

पीछे भी काफी लोग दिखाई पड़ रहे हैं जिन्होंने मास्क पहन रखा है एक पुलिस कर्मी भी दिख रहा है।

एक बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक दृश्य है।

हमें सफेद रंग का डेस्क दिख रहा है।

और सामने में भी एक दरवाजा बना हुआ है वहां भी काफी कुर्सियां रखी हुई है।

दाहिनी ओर एक प्रिंटर भी रखा हुआ हैं पीछे नीले रंग का एक बोर्ड दिखाई पड़ रहा हैं।

मीरा दिखाई पड़ रहा है उसके ऊपर कुछ पेपर्स रखे हुए हैं एक कांच की खिड़की भी दिखाई पड़ रही है एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है।

इस चित्र में एक स्विमिंग पूल दिखाई पड़ रहा है स्विमिंग पूल के आसपास जो बाउंड्री बनी हुई है वहां पे एक पानी के बॉटल रखी हुई है।